दो बाइक के ऊपर दो आदमी है और बाइक के बीच में एक बच्चा सा खेल रहा है।

बाइक के सामने एक कार भी दिखाई देता है।

जिसके बाहर दो डस्टबिन रखा हुआ है।

चप्पल और बिना चप्पल का लोग भी दिखाई दे रहा है।

के लिए तख्ता से बनाया गया है।

ये बोहत सारा टेबल्स भी दिखाई देता है।

इस तस्वीर पर बहुत सारा घर दिखाई देता है।

इस तस्वीर में एक जिम का रूम दिखाई देता है।

उसके ऊपर नंबर भी दिया गया है।

घर के अंदर एक चेयर रखा हुआ है।

जिसमें एक टेबल भी दिखाई देता है जिसके ऊपर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

लॉट्स ऑफ़ पीपल एंड लॉट्स ऑफ़ व्हीकल्स

चेयर के ऊपर पर्दा सफेद कलर का रखा हुआ है।

यह बैंक अभी बंद है बैंक के सामने दो बाइक रखा हुआ है।

इसमें बहुत सारा दारू बेचा गया है।